अच्छा बैकग्राउंड है बहुत ही खुबशुरत बहुत ही बढियाँ बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा।

रिक्शा है नया-नया जो एक आदमी है बहुत ही बढियाँ--

बहुत ही अच्छा है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सुंदर है।

यूनिक यूनिक का है बहुत ही साफ़-सुथरा अच्छा है जो की बड़ी अंदर से सुंदर है।

बहुत ही सुंदर है बहुत ही बढियाँ है।

है बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा है बहुत ही बढ़िया है।

सुंदर है बहुत ही बढ़िया है --

और ये बहोत ही खूबसूरत जगह है देखने में ही खूबसूरत --

देखने में बहुत खूबसूरत अच्छा बहुत बढ़िया है अ लुक बहुत अच्छा --

नित्तय कर रही है जो कि तीन कलर की बलून है।

बहोत ही अच्छा कर रहा है डांस बहोत आदमी देख रहा है बहोत ही बढ़िया बहोत ही सुंदर।

बहुत अच्छा खूबसूरत है देखने के लिए।